दो लड़कियां दिख रही हैं जो साइकिल पर जा रही हैं।

वही रोड के नीचे में काफी सारे बाइक्स और ठेले दिखाई दे रहे हैं।

राइट हैंड के नीचे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए है कुर्सियों पर।

केक भी बहुत प्यारा सा है।

अंदर की तरफ किताब कॉपी सामान मिलता है।

और उसके पीछे भी एक आद उसके आगे भी एक आदमी खड़ा है। यहां पर इतनी सारि बोरियां में बहुत सारे रंग-बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं।

ए सड़क पर की तस्वीर है।

दोनों इंजीनियर लग रहे हैं। सड़क पर और गाड़ियां दिखाई दे रही है।

ये एक कमरे की तस्वीर है जहां ये एक बेड रखा हुआ है।

दुकान है और बीच के फ्लोर में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक है।

जहां पर कुछ फसले लगी हुई हैं बोहोत खूबसूरत सा लग रहा है।